का द्रश्य है जहां पर एक महिला है जिसने लाल रंग की ड्रेस पहनी हुई है ज्वेलरी पहनी हुई है वे हाथ में चूड़ी पहनी हुयी है वे गुहगन्ट को उठाये हुए खड़ी है पीछे एक आदमी खड़ा है जिसने--